बहुत सारे लाइटे भी जल रही है।

हम देख पा है की--

यहाँ हम देख पा रहे है की मंदिर है जोकि मंदिर बहुत सुंदर देखने में लग रहा है और ये शायद हिन्दू धर्म स्थल मस्त जगह है ।

यह हम देख पा रहे है की यहाँ एक गाड़ी खड़ी है और ये देखिए कितना बड़ा घर है शायद लग रहा है कोई कार्यालय है आना प्रवाही का कार्यालय और एक बाइक --

ओ मंदिर काफ़ी देखने में सुंदर लग रहा है और देखिए वो लाल एक झन झंडे उड़ रहे है और एक दूर में देखिए और पर्वत भी है ।